उसमें बच्चों के खेलने के लिए एक स्लाइडर बना हुआ है। यह स्लाइडर पीले कलर का है।

अ सोडा एंड कॉफी शॉप लिखा हुआ है। सामने शटर है।

और चैनल गेट भी लगा हुआ है।

सामने दिए गए इमेज में हमें पार्किंग नजर आ रहा है जिसमें बाइक --

छोटी-छोटी घास के अ ग्राउंड बना हुआ है। उसके साइड में टेंट हाउस रखा हुआ है।

दिए गए इमेज में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें लाल और सफेद -

अ खड़े हैं इसमें सीमेंट का बना हुआ है। ईंटे लगी हुई है एक साइड मोरंग है।

जिसमें सफ़ेद रंग के बादल नजर आ रहे है एक सड़क है सड़क के किनारे रेलिंग है।

और थोडी ही दूरी में बिजली के --

दिए गए इमेज में हमें एक हॉस्पिटल नज़र आ रहा है जिसमें दो कंपाउडर हैं।

एक कम्पाउण्डर लेडीज है और दूसरा जेन्ट्स है।

दिए गए इमेज में हमे एक बड़ा सा पार्क नज़र आ रहा है। पार्क के बीचों-बीच वहाँ फाउंटेन है जो --

अ टाइल्स लगी हुई हैं और लोहे की रेलिंग्स लगी हुई है। एक तरफ एक आदमी ख --

जिसमें एक बड़ा-सा ट्रक है एक कार खड़ी है एक बाइक है।